इस फोटो में हिमालयन गिद्ध लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

ऊपर चीज टंगी हुई है विंडो लगे हुए हैं।

इस फोटो में फर्नीचर का शोरूम दिखाई दे रहा है।

जीसका रंग सफेद है कुछ गुलदस्ते भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में श्री शारदा मां इंटरप्राइजेज लिखा दिखाई दे रहा है।

एक आदमी साइकिल वाली ठेली ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

पीछे कई पोस्टर लगे हुए हैं एक महिला खड़ी हैं जोकि स्पीच दे रही हैं।

जिस पर योविता पान प्लस जनरल स्टोर दिख लिखा दिखाई दे रहा है।

एक महिला खड़ी है आसमान भी दिखाई दे रहा है।

कुर्सी दिख रही है एक व्यक्ति उसे पर बैठे हैं एक बच्चा खड़ा है।

गेट दिख रहा है दीवार में एक घड़ी टंगी हुई है दो पंखे लगे हुए हैं।

व्यक्ति खड़े हैं रोड के किनारे पर लकड़ी की बेल्च रखी हुई है एक पेटी रखी हुई है।

इसका रंग सफेद और लाल है हवनकुंड में आग जल रही है।